और बॉडी लोशंस पर्सनल केयर का सामान है बहुत सारा सामान या दिखा रहा बिंदी --

और दोनों हाथों को तीनों ने एक सही जैसे डांस किया है किसी ने पीले नीले रंग के कपड़े पहन रखे हरे पीले--

इस चित्र में मुझे बहुत काफी अ कुर्सियां नजर आ रही है एक टेबल है और पानी पीने का--

इस चित्र में मुझे टेडी पियर और चूड़ियां --

बहोत सारा सामान यहां पर इसकी दुकान में भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

और नीला आसमान है। कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं और पानी बहोत साफ और बहोत अच्छा लग रहा है।

नीचे एक पटिया है जिसको व्यक्ति वहां पर ठीक कर रहा है और काफी पानी वगैरह --

यहां पे एक लड़की अह है अपना सेल्फी ले रही है खुले बाल हैं जींस पहन रखी वाइट कर कलर के जूते इसने पहन रखे हैं एक छोटा सा अह हाफ शर्ट पहन रखा है।

एक नीली कलर की कुर्सी है दो छोटी इस टाइप की कुर्सी है और --

या एक पेट्रोल पंप दिख रहा है पेट्रोल जहां पर गाड़ियां वगैरह पेट्रोल भराने आती है एक व्यक्ति चलता हुआ नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक बड़ी सी टेबल है कुर्सिया है और बहोत सारी टेबल है कुर्सिया लग रही हुई है। एग्जामिनेशन हॉल टाइप जैसा दिख रहा है बहोत--

और लाइन लगी हुई है एटीएम के बाहर। लोग एटीएम से पैसा निकाल के बाहर आ रहे हैं कोई जा रहा हैं।

तीन-चार लोग हैंजो लाइन में लगे हुए हैं एक एक शर्ट पहने हुए हैं।

काफी जो है डब्बे बन रखे हुए हैं चेक्स एक क्रीम कलर की टाइल्स लगी हुई है बड़ा सा हॉल है।

यह एक रेलवे प्लेटफार्म है और रेलवे स्टेशन है जहां पर एक--

और इसके अलावा एक कुर्सी हैबड़ी सी ब्लैक कलर की।

हेयर बाली बाल हो रहे हैंऔर काफ़ी सामान रखा हुआ है हेयर ड्रायर से यह इसके बाल को सुखा रहा है।

काफी सामाने इसके अंदर है आटा दाल वगैरा सारी सब्जियां अं सारा शॉप किराने का यहां पे दिख रहा डस्टबीन है।

और कुर्रे चिप्स के पैकेट वगैरह दिखाई दे रहे हैं और --

लाल चेक पहन रखी है नीली कलर की इसने जींस पहनी हुई हैऔर पेड़ दिखाई दे रहे हैंकाफी --

एक बड़ा सा लोहे का गेट है एक ओसो नाम करके एक विला लिखा हुआ है जहाँ पर --

यह एक छोटे से बच्चों की यहां पर एक जो तो बोलते है ना पट्टी दिख रही है एक।

पिंक कलर जैसा शर्ट पहना हुआ है ये ऐसा लग रहा है जैसे फोटो खिंचा रहा है इसके पीछे एक झरना सड़ी का पार्क सरी का बना हुआ है जो पानी बह रहा है वहाँ से।

इस चित्र में मुझे एक स्कूटी नजर आ रही हैवाइट कलर की जिसमें एक लड़की बैठी हुई है।

फ्रूट से बने हुए चीजे नारियल संतरे--

इस चित्र में किसी की शादी का फंक्शन दिखाई दे रहा है एक फूलों से भरा हुआ मेन गेट बनाया हुआ है सजावट बहुत अच्छी हुई है।

काफी डेकोरेट हुआ हुआ है और रोशनी बहुत ज्यादा है।

और इनकी अपने आप को इन्होंने मास्क से ढका हुआ है।

और सेल्फी इनकी दिखाई दे रही है लेती हुई ऊपर वाइट कलर का खंबा है बहुत सारे पाइप वगैरह नजर आ रहे हैंबल्ब लगा हुआ है बड़ा सा।